हम बहुत सारी गाड़ियां भी देख पा रहे हैं। यहां हमें इलेक्ट्रिक लाइट के तार भी नजर आ रहे हैं।

कुछ दुकान भी देखने को मिल रहे हैं साथी हम कुछ बिल्डिंग भी देख पा रहे हैं दुकानों पर कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

हम यहां बस कार स्कूटर स्कूटी और कुछ ऑटो रिक्शा देख पा रहे हैं आसपास हमें पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

वही हम यहां कुछ बच्चों को पड़ता हुआ देख पा रहे हैं देखने में यह दृश्य अच्छा है।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

दिखने में यह दृश्य एक जू का लग रहा है इस हिरनी के आसपास एक बाउंड्री की गई है।

मे हम दो हाथी को देख पा रहे हैं देखने में इन हाथियों को ऐसा लग रहा है मानो जैसे यह कुछ खा रहे हो।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

दृश्य में हमें विष्णु भगवान दिखाई दे रहे हैं वही हम यहां एक ईगल भी देख पा रहे हैं जो कि भगवान को नमन कर रहा है--

के हमें एक लकड़बग्घा दिखाई दे रहा है जो कि हमें दूसरी और देखाता हुआ नजर आ रहा है।

ये दृस्य एक जू का लग रहा है हमें आसपास बाउंड्री भी की गई दिखाई दे रही है ।